ये कागज भी रखा गया जिसमें उनके बारे में बताया गया है।

यह अभी लगी है और काफी ये आसमान भी बड़ा सा--

खिड़की भी लगी गई है जो कि व्हाइट है ऑरेंज --

पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं यह कोई एक रेस्टोरेंट के अंदर का--

आते जाते और उसके ऊपर से काफी सारे लोगों ऊसको देखते भी हैं और ये--

और काफी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं यहां पर--

पिक्चर में जैसा की आप देख सकते हैं यहां कोई हॉल का एक स्टेज सजा हुआ है जहां पर काफी सारे लोग खड़े होकर हैं।

पीछे की तरफ पे काफी सारे कुर्सियां टेबल्स भी लगे हैं जहां पर सभी लोग बैठ कर--

टावर बना गया है और उसके ऊपर जाने के लिए एक बड़ा सा पुल भी बनाया गया है जिसमें बीच से --

प्रेमी की चिन्ह का एक ये ताबिज पहना हुआ है जो कि बहो --

और काफी सारे लोग मोजे पेहन के और काफी सारे लोग इन--

तीन से चार सौ लोग बैठकर प्ले ग्राउंड में मैच देख रहे हैं और--

किराने की दुकान के अंदर का दृश्य यहां पर काफी सारे बिस्कुट काफी सारे नमकीन--

ये तेहखाने मैं रखे गए हैं और बहोत सारे दवाईयां भी और काफी सारे बॉटल्स --

बहुत सी बहुत सी बिल्कोन पी_वी_टी एल_टी_डी लिखा गया है और ए--

पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं ये कोई एक बड़ा सा स्टेज है जहां पर एक ही खूबसूरत सी लड़की--

सा बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें काफी सारी लाइटें भी लगी हुई हैं व्हाइट कलर --

टाइल्स की जगह एक प्लाईवुड की लगाया गया है।

यह कोई समंदर का दृश्य है जहां पर एक--

बोरा भी रखा गया है जो कि सुनहरे कलर का है।

में जैसा कि आप देख सकते हैं या कोई एक साउंड है।